और कुर्तियां इन सारे कपड़े मिल रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक नाई की दुकान दिखाई गई है जिसमें नाई--

यह हारमोनियम बजा रहा है कोई तबला बजा रहा है।

योगा करते हुए दिखाई दे रहें हैं ये एक योगा क्लास हैं यहां पे बच्चों को योगा करने में ट्रैनिंग दी जाती हैं।

और-अर-अ साइड में जमीन में घास भीं लगी हुई हैं।

पेड़ पौधे बहोत सारे दिख रहा है रोड लाइट भी जल रही है।